हैलो गाएस आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कैसा लग रहा हैं आपको तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई हैं जिसको की काफी बढ़िया लिखा हुआ हैं इस पर बिल्डिंग काफी बड़ी हैं।

भाईसाब आप देख सकते है यहाँ पे आप यहाँ पर कैसा लग रहा है मुजे काफी बढ़िया लग रहा है देखने मे देखिए यहाँ पर कैसा लग रहा है काफी--

यहाँ पर एक मशीन है जो की काफी बढ़िया है एक मशीन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस चीज की मशीन रखी हुई हैंयहाँ पर देख सकते हैं आपको काफी बढ़िया काफीअच्छा लग रहा देखने--

फूल का मंदिर बना हुआ है जो बहुत अच्छे से सजा हुआ है देख सकते है यहाँ पर एक शक्श खड़ा हुआ है और लाइटिंग काफी बढ़िया रखी हुई है की यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में बहुत सुन्दर काफी अमेजिंग चीजे सामने देखी यहाँ पर--

और काफी बढ़िया लग रहा है देखने मे ये देखिए मछलिया कटी पीटी डली हुई है यहाँ पर कई सारी प्रकार की मछलिया है एक सक्ष जो हैंउसका रेट बता रहा हैं आप देखिए यहाँ पर कैसा लग रहा है काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर कुछ--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

हेलो गाइस आप देख सकते हैं आपको कैसा लग रहा हैं काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम चल रहा हैंऔर काफी बढ़िया लग रहा हैं देखने लायक हैं देखिए आप यहाँ पर आपको कैसा लगा--